साइकिल्स और मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई है कुछ लोगों यहाँ आदमी लोग भी खड़े है आसमान साफ है।

यहां पे एक फाउंटेन है उसके बाजू में एक लड़की ने ग्रीन कलर का सूट पहना है।

जिसमें अ एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है और ऊपर आसमान है।

अ व्हाइट अ र व्हाइट टेबल्स क्रीम कलर की टेबल्स रेड चेयर है यहां बस--

यहां बस डोसा पाव भाजी चाइनीज इडली वडा रसमलाई छोले भटूरे पिज़्ज़ा बर्गर टी कॉफी लस्सी बहोत टेस्टी मिलता है।

ये एक बच्चे की सेल्फी इमेज है जिसके पीछे ए एक गेट है। उसे गेट में कुछ डिजाइंस बने हुए हैं गेट लोहे की है।